बीच मेंसे एक रोड जा रहा है और बीच मे एक बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ हैऔर मोबाइल की ओर देख रहा है।